जहां पे क्लीनिक में डेंटल चेयर लगी हुई है।

वही एक मोर खड़ा हुआ है।

रेडियो टी_वी डिस्प्ले में लगे हुए है।

जहां पे बहोत सारी छोटी छोटी नावे हैं।

इनमें बाहोत सारे लोग बैठके--

जहां पे अलग अलग बर्तन डिस्प्ले किए गएं हैं।

बनाने वाली जिसमें कांच का काम किया जा रहा है।

सब्जी मार्केट दिख रहा है जहां पे बहुत सारी सब्जियों की दुकानें हैं।

यहाँ पे दिखाई दे रहा है।

जरूरत कि सारी पशुओं की चीजें है।

ये एक कॉन्फरन्स हॉल दिख रहा है।

और टेबल्स पे बिसलेरी की बॉटल्स रखी हुई है।

पीछे नेट बनाई गई है जिसमें--

छोटे बड़े पेड़ पौधे लगे हुए--

घास के ऊपर एक बड़ा सा कछुआ है।

कछुआ काफी बुढ़ा लग रहा है।

वही पे रेड और वाइट बलुन से सजाया गया--

कटलरी की दुकान दिख रही है।

जहां पे बहोत सारी कलरफुल बोट्स खड़ी हुई है।

बोट्स में कोई भी बैठा हुआ नहीं है दूर दूर तक--

ये एक बड़ा सा गार्डन दिखाई दे रहा है।